आसमान सारा छो बहुत ही अच्छा लगे छो फील्ड बहुत ही बड़का छो बहुत सुन्दर छो।

आ तीन गो मतलब बल्ला गाड़ल छो ए में किल्ली धेएल छो अ मतलब --

ऊपर में भी दिवाल खड़ा केर देने छै पूरा --

बहोत ही अच्छा बहुते जादा भीड़ छो आदमी सब चले न पाबे स एक दूसरे --

पाइप सब देएल छै पानी देय छै पौधा सब मे बहुत सुंदर लगे छो।

उधर टीना के घर छो दूगो बोढ़ा रखल छो। आर --

सादा कलर के फूल छो हलदिया कलर छो गुलाबी छो पिंक कलर के जो बहुत सुन्दर --